शासकीय एवं कला महाविद्यालय।

जो साइड में भी हैं एक दो बिल्डिंग है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है एक पेड़ है जो बहोत ही अच्छा लग रहा है।

जो कि बंदी के सामने बहुत ही छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं जो की बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और साइड में और भी बड़े-बड़े घर हैं जो की बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और साइड में टाली का एक घर हैं जो की बड़े अच्छे लग रहे--

साइड साइड में बहुत सारे पेड़ लगाए है जो की बहुत ही हरे-भरे है बहुत ही अच्छे लग रहे है और साइड में भी बहुत ही पेड़ जो अच्छे लग रहे है बहोत ।

जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया हैं सामने छोटे-छोटे कप हैं बहोत ही खिलौना हैं और भी बहोत कुछ जो हैं--

जैसे की आप देख रहे है ये एक बहोत बड़ा पूल है और नीचे नीचे नदी है और ऊपर में आसमान में बहोत सारे बादल छाँए हुए है जो की जो की बहोत खूबसूरत व्यू लग रहा है और चारो तरफ और शायद पीछे अ छोटे-छोटे पौधे पेड़-पौधे दिख रहे है जो की बहोत ही अच्छा लग रहा है।